खुला है दो शटर बंद है।

इसके ऊपर में बिजली का खंभा तार लगा हुआ है घर पुराना घर नजर आ रहा है।

और इसके पीछे में फॉल सीलिंग लाइट ऊपर में लगा हुआ है।

दो रूम क्वार्टर टाइप का है।

इसी में आम का बगी बगीचा पेड़ है।

टेबुल पर एक बोतल पानी एक गिलास एक गिलास है उसके ऊपर एक प्लेट में --

मैम सर आये है। बगल मे तीन लड़की एक लड़का है।

इसके पीछे एक नया अलमीरा अलमीरा है अलमीरा उधर लाइट स्विच नजर आ रहा है।

ये सेमसंग का दुकान है मु मु मोबाइल फोन का।